यहां पर मुझे एक आसमानी कलर के भी कपड़े दिख रहे हैं।

यहाँ पर मुझे एक दीवाल दिख रही है व्हाइट कलर की। यहाँ पे मुझे एक अलमारी भी दिख रही है।

हरे कलर की चीज दिख रही है यहां पर मुझे एक--

यहां पर रोड में दो व्हाईट कलर के पत्ते बने हुए हैं यहां पर मुझे एक सामने पहाड़ भी दिख रहा है।

यहां पर मुझे एक टैंकर खड़ा हुआ दिख रहा हैं।

यहां पर मुझे एक गाय नजर आ रही है।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

यहां पर मुझे कुछ मिठाई की भी दुकान नजर आ रही है यहां पर एक फ्रिज धरा हुआ है।

यहां पर मुझे उस दीवाल में नीले कलर के दो बोर्ड एक लाल कलर का बोर्ड है और यहां पर लिखा हुआ है सूचना उपलब्ध है।

यहां पर मुझे एक कुर्सी नजर आ रही है।

आसमानी कलर का कुर्ता और क व्हाइट कलर का पजामा पहना हुआ है।

यहां पर मुझे कुछ समान नजर आ रहे हैं यहां पर मुझे हरे कलर की चादर बिछी हुई नजर आ रही है।

यहाँ उधर काम चल रहा है यहाँ मुझे एक डम्पर नज़र आ रहा है जिसमेँ एक चक्का नज़र आ रहा है।